यह एक फ्रूट की दुकान है इसमे तीन न न भैया लोग दिख रहे हैं | और यह दुकान में केले--

अंगूरतरबूजपपीता फल फ्रूट हैं ग्रीन कलर की टोकनी है और एक--

यह एक हवन है जिसमें येलो एंड रेड कलर का कलर हुआ है और ये भइया हैं जो घूर-घूर के --

यहाँं एक भारत माँ बनी हैं और यहाँं पर एक लड़का है यहाँं पे तिरंगा लहरा रहे है यहाँं पे झंडा लगा --

यह एक मंदिर की तस्वीर है | जहाँ पर पर काफी सारे लोग मौजूद है और --

यह एक लड़का हैं। जिसकी बड़ी-बड़ी आंखे हैं। लंबी-लंबी मुछे हैं।

ये कपड़े की दुकान है। इस कपड़े की दुकान का नाम द चेन्नई सिल्क यहाँं पे स्कूटी जा रही है। यहाँ पे --

बहुत सारे कपड़े मिलते हैं यहाँं पे । दो लड़कियां हाथ जोड़कर खड़ी हैं। यहाँं पे एक पुलिस वाला है। यहाँ पे --

ये एक माला है जिसमें येलो कलर के फूल लगे हैं। ऑरेंज कलर के ब्लू कलर के रेड कलर के फूल हैं। इसके पीछे और फूल रखे हैं। यहाँं पे तीन भईया नजर आ रहे हैं। एक दिख रहा है।

यह एक रोड है। यहाँ पर एक है और ग्रीन कलर का पेड है बहोत सारे लोग

यहाँ पर एक ब शादी हो रही है जिसके पीछे दो एक अंकल खड़े हैं और यहाँ पे एक भैया है जिन्होंने ब्लू कलर की कोट पहनी है व्हाइट कलर की शर्ट --